यह एक होटल का दृश्य है जिसमें बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई है कुर्सियों का रंग सफेद और काला है।

इसकी दीवारों को शीशा से बनाया गया है।

यहां गेट के सामने एक औरत खड़ी है जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है।

एक बेसिन लगी हुई है और उसके ऊपर आईना लगा हुआ है।

यहां पर मछलियों को तौलने के लिए एक तराजू भी रखा हुआ है।

इसमें गुलाबी रंग के पर्दे लगाए गए हैं।

पीछे की तरफ कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिनका रंग हरा है।

नीचे टाइल्सो का रंग सफेद है और कुछ कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में एक इमारत दिखाई दे रही है जिसका रंग सफेद और पीला है।

इस दृश्य में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो की क्राफ्ट बना रहे हैं।

आस पास घनी जंगल दिखाई दे रहे हैं जिनका रंग हरा दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे पोस्टर लगाए गए हैं।

एक लकड़ी का टेबल बनाया गया है जिसके ऊपर लैपटॉप और बहोत सारी चीजें रखी गई है।

एक आदमी दिख रहा है जिसने ब्लू रंग का शर्ट पहना हुआ है।

नारंगी रंग का ओटा बनाया गया है।

इसमें बहुत सारी खिड़कियां और बालकनी बनाई गई हैं।

नीचे गेट के पास बैलूनो से सजावट की गई है।

यहां पर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक सफेद रंग का टेबल लगा हुआ है जहां पर बहोत सारी कुर्सियां लगाई गई हैं।

मूर्तियों के बीच में पिलर बना हुआ है।